रोड में बहुत सारि वाहन खड़ी है।

मैदान है मैदान में बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित हुए हैं मैदान के चारों और बाउंड्री हैं।

बाउंड्री के पास बहुत सारे घर बने है घर में बहुत सारी खिड़कियां है और चारों और पेड़ लगे हुए है।

इमारत में बहुत सारे व्यक्ति है जो अन्दर की और है कुछ पौधे लगे हुए है।

मूर्तियों के नीचे बहुत सारे इंसान खड़े हुए है और एक दरवाजा है।

मैदान में काफी कचरा डाला है मैदान समतल नाही है।

और छोटे छोटे पौंधे लगे है बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुये है लाईट जल रही है।

चारों और मैदान बना है मैदान मे घास लगी हुई है।